ये एक तलाव है तलाव का नाम अंबरसरी तलाव है तलाव के आजूबाजू बहुत सारे झाड़ भी लगाए गए है तलाव के बीचो बीच में --

पैरों से खेलने वाला एक खेल होता है जहां पर पूल वो बॉल को पैर मार के--

अच्छी एक अच्छी पौष्टिक आहार होती है जो लोग बना कर खाते हैं।